इधर एक रोड की साइड में दो बस खड़ा है एक बास की डोर ओपन है सामने एक बास में फूलों से सजाया है दूर में भी और एक डोर दी.

इधर एक मैरिज हॉल है मैरिज हॉल में एक मैरिज की अनुष्ठान हो रहा है सामने एक पेंडल की गेट सजाया है गेट के सामने बहुत सारे --

फूल भी लगाया है बहुत सारे फ्लावर भाज भी है पेंडल के अंदर बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहा है.

इधर एक मैरिज की अनुष्ठान हो रहा है चार पास बहुत सुंदर से सजाया है एक स्टेज भी सजाया है स्टेज की आस-पास बहुत सारे फूल भी लगाया है।

बात भी है इस ब्रिज से रोज बहुत गड़ी चलती है आप ब्रिज से गड़ी चल रहा है कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है.

भी आया है इधर रोज बहुत सारे लड़का लड़की खेलने के लिए आती है दूर में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है चार पांच में कुछ पेड़ भी है.

इधर बड़ा सा रोड है रोड पे बस जा रहा है बस कि अंदर ड्राइवर है बहुत सारे पेसेंजर भी है रेड कलर की प्रायवेट कार भी है।

इसलिये रोज़ बहुत सारे यहाँ पे अ फिश खरीदने के लिए आती है।

ये बस डिपो है बस डिपो में बहुत सारे बस खड़ा है चार पांच में बहुत सारे लोग भी है बस की ड्राइवर भी बस की सामने है.

पसीजर है नोटबुक है कैलकुलेटर है दुकान के रॅक में बहुत सारी मेडिसिन है दूर में घड़ी दिखाई दे रहा है।

लिंग में फैन है इस दुकान में रोज बहुत सारे लोग मेरी मेडिसिन खरीदने के लिए आती है.

इधर एक ज्वेलरी का दुकान है दुकान बहुत बड़ा है दुकान की सामने बहुत सारे फूलों के साथ सजाया है इस दुकान की ओपनिंग हो रहा है.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

बूटी की हेलमेट भी दिखाई दे रहा है सलन के पास में और एक दुकान है दुकान अब बंद है.

स्टेशन की प्लेटफार्म में छोटा-छोटा पेयर दिखाई दे रहा है साइड में बड़ा-बड़ा पेयर है चारपास में इलेक्ट्रिक की पोस्टर है.

इधर एक स्कूल दिखाई दे रहा है स्कूल बहुत पुराना है स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है बहुत बड़ा है स्कूल के सामने एक फील्ड है फील्ड में.

कैमपिंग हो रहा है कुछ महिला कुछ लोग दिखाई दे रहा है कुछ लड़का के हाथ में होडिंग दिखाई दे रहा है तीन महिला के हाथ में भी.

इधर एक मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद के अंदर बहुत सुंदर है कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़ा है कुछ लोग बैठे हैं एक छोटा सा.

की पोस्टर भी दिखाई दे रहा है दूर में रोड की साइड में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग बहुत बड़ा है.

इधर एक सब्जी का दुकान है दुकान में बहुत सारे अ लेमोन्स कोर्रिएन्डर स्लेबस है अ बनाना भी दिखाई दे रहा है अ --

दुकान के अंदर बहुत सारे कस्टमर की भीड़ हुआ है बहुत सारे दुकानदार भी है इस दुकान की देश की क्वालिटी बहुत अच्छा है इधर रोज बहुत सारे लोग --

इधर एक रोड में एक बस खड़ा है बस ब्लैक कलर की है बस के अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं एक लोग --

इधर चर्च में प्रोग्राम हो रहा है बहुत लोगो का भीड़ हुआ है एक लड़का बुक किताब दे रहा है फ्लोर में बहुत सारे महिला छोटा छोटा पा --